दो आदमी दिखाई दे रहे है।

सामने एक सड़क दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे गमले दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सुंदर आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ औरतें दिखाई दे रही है कुछ मेहमान दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर बच्चों के खेलने का झूला दिखाई दे रहा है।

कांच के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े बोरे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।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

एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है इसमें काफी सारी लैट्रिन की सीटें रखी हुई है।

मुझे यहां इस दुकान में खेलने का काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है।

एक पॉलिथीन दिखाई दे रही है।

बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।